यहाँ पर एक महिला दिखाई दे रही हैं जिसने हाथो में चूड़ियाँ और बैगनी और सफ़ेद रंग की स्वेटर पहन रखी है।

काले रंग का बैग टांग रखा है और दूसरे ने अपने हाथ में काले रंग का बैग लटका रखा है| यह कहीं जा रहा--

फुल की नोक सफ़ेद रंग का है पत्तियों का गहरा हरा रंग--

बहोत सारे पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं और सड़क भी दिखाई दे रही है।